यह एक क्लासरूम है यह रूम है एकदम खाली है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है बोटल है चोक है टेबल कुर्सीस है।

यहाँ पे बहोत सारी मालस हैं साड़ियों के मालस हैं बच्चों के लिए फर्स्ट ट्राइ का माल भी लगा हुआ--

यहाँ पे लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे है एक लड़का बेट पकड़े खड़ा है एक बॉल फेंक रहा है।

यह एक होटेल है यहाँ पे बहोत ही अच्छी व्यवस्था है लाइटस [ लगी हुई है कुर्सी टेबलस है।

यहाँ पे एक विद्यालय है जिसका नाम आदर्श विद्यालय मंदिर है एक गाड़ी खड़ी है हरे-भरे पेड़-पौधे है।